ये एक दिवा की चित्र है। जहाँ नील शाइन बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है।

आकाश के रंग नीला है और बादल छाय हुए है।

इसके आसपास बहुत सारे पौधे और पेड़ लगे हुए है और कोई आदमी नही है।

इस तस्वीर में हम देख सकते है एक विशाल शोरूम। जहा नीला रंग के ऑटो खड़े हुए है।